यह फोटो एक घर का है।

यह फोटो हिरन का है।

यहां पर बहुत सारे हिरन दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बहोत सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ दिखाई दे रहीं हैं।

यह फोटो एक जिम का है।

यह फोटो एक जिम का है।

सीसॉ दिखाई दे रहा है।

यहां पर सनसेट हो रहा है।

यह एक कॉफी शॉप का फोटो है।

यहां पर बहुत सारे जानवर होते हैं।

एक हिरण दिखाई दे रहा है।

यह हिरण बहोत बड़ा और सुंदर है।

में यहां पर फोटो खींचा है।